यहां एक चर्च का चित्र है। इस चित्र में--

यह चित्र मुझे एक पार्टी का दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक बाजार के दुकान का है।

यह चित्र एक ऑफिस का है।

इस चित्र में मुझे मच्छी बाजार दिखाई दे रहा है।

एक हनुमान जी की तस्वीर भी है।

इस चित्र में एक एक्टिवा भी बाहर है।

कुछ ग्राहक दुकान के बाहर सामान लेने के लिए--

दुकान के बाहर एक लड़का काम करते हुए--

इस चित्र में कमल के कुछ फूल दिखाई दे रहें हैं।

यह चित्र एक कक्षा का है।

इस कक्षा में बहोत सारे विद्यार्थी है।

कुछ लड़कियां है अध्यापका भी खड़ी हुई हैं।

इस कक्षा में एक खिड़की भी है।